इधर एक बजाज कंपनी की शौरूम है।

ये सब बहुत पुराना है।

टोटो के पीछे में एक लोग खड़ा है।

नौका में बहुत सारे लड़का नौका चढ़ रही हैं।

गार्डन के चार पास बहोत सारे लोग घूम रहा है।

इधर एक लैंड है लैंड में एक छोटा सा पार्क दिखाई दे रहा है।

चर्च की सामने कुछ छोटा-छोटा पेड़ है।

दूर में एक ओवरब्रिज भी दिखाई दे रहा है।

इधर एक बड़ा सा सड़क है ।

चार-पाँच बहुत फूल लाइट से सजाया है।

इधर एक पत्थर की गुहा दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप की एक छोटा सा ऑफिस भी है।

बस के सामने एक लोग भी खड़ा है ।

कुछ चेयर टेबल भी दिख रहा है।

इस दुकान में रोज बहुत लोगो का भीड़ होता है ।

सड़क के साइड में एक ऑटो खड़ा है।

अंदर बहुत सारे मेशीन्स दिखाई दे रहे।

सड़क में बहुत सारे बाइक प्राइवेट कार ऑटो चल रहा है।

इधर अच्छा कॉफ़ी स्नैक्स मिलती है ।

लेकी ऊपर एक बड़ा-सा ब्रिज भी है।

इधर सामने मूर्ति दिखाई दे रहा है।

कुछ डायरी भी है ।

स्टेज के नीच में एक वीडियो कैमरा दिखाई दे रहा है।

माउस भी दिखाई दे रहा है।